अगल बगल में घर है घास वास है उसके बाद पीछे पहाड़ वहाड़ है।

बादल वादल मस्त एकदम मौसम हुआ है पेड़ पौधे सब एकदम हरियाली है यहाँ पे।

एक पीछे शॉप है और उसके सामने में वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ एक ढाबा है पीछे बहुत बढ़िया नज़ारा मस्त एकदम ऊपर पूरा झंडा लगा हुआ है हरे कलर का।

यह एक घर है जिसके ऊपर लिखा हुआ वेद एंड पीजी रूम्स फैसिलिटीज़ अच्छी-अच्छी है और यहाँ पे व्हाईट कलर का पूरा--

यह एक रेस्टोरेंट जैसा है वहां पीछे कुर्सीस लगी हुई है आठ कुर्सी लगी हुई है पीछे एक सहित--

बीच में टेबल लगे हुए हैं और पीछे एक कांच का मतलब दरवाजा है जिसके ऊपर ओम लिखा है गणेश जी छपे हुए है एक ऊपर बैठा टेबल फैन वहां पे रखा है।

मस्ती हो रही है कोई पढ़ रहा है ब्लू कलर की कुर्सी है वाइट कलर का पूरा टेबल बना हुआ है सब लोग यहां पे पढ़ रहे--

यह एक क्विक फार्म इलेक्ट्रि का नाम की स्कूटी है टॉप सेलिंग स्कूटी है यहां पे इसका लीडर है।

और यहां पे ग्रो गो ग्रीन लिखा हुआ है यहां पे पांच-छह स्कूटीज पड़ी हुई है ई व्हीकल्स पड़ी हुए हैं यह शोरूम का--

एड्रेस वन थ वन नाइन थ्री सिक्स फाइव ओल्ड आज मंडी रोहतक में--

वन टू फॉर जीरो जीरो वन यहां पे एक एसी का आउटवेंट लगा हुआ है पूरा ऊपर कांच का--

सब एकदम सेम कलर का फर्नीचर्स हुआ है यहां पे ऊपर फंका चल रहा है.

चाय सुट्टा बार ओर नीचे लिखा है कडल द कुल्हड़ एक सामने स्कूटी खड़ी हुए है कांच मे री --

यहां कति क्रिकेट का मैच हो रहा है एकदम सनसेट्स हो रहा है क्या मस्त नजारा है विकेट में बहुत सारे लोग आए हुए हैं.

आइ_सी_आइ_सी बैंक का दुकान है यहां पे लाइफ इंश्योरेंस का भी एक बगल में दुकान है।

लेबर है यह एक लेबर है जो कि हैमर मशीन से नीचे तोड़ाई कर रहा है बगल में हतोड़ी रखा है.

और उसके पीछे देखा जाए तो उधर मस्त पूरा व्यू आ रहा है यहां पे बालू पड़े टगारा बल्टी उल्टी पड़ी हुई है.

यहां पे प्रेशर पंप लगा हुआ है बगल में पूरा पाइप सा इस ऊपर एक जनरेटर पड़ा हुआ है।

ये एक रियल पराठा जंक्शन करके दुकान है जहां पर स्टील्स के कुर्सी लगे हैं ब्लू वाइट और--

येलो कलर के टेबल्स लगे हुए हैं कोई बैठा हुआ फैन है है।

पीछे दो तीन दो पोस्टर में रेल्स पराठा जंक्शन --

यहां पे तीन लाइन थे तीन तीन लाइन करके दो शेप में--

साइड में बहुत सारा डब्बा रखा है नीचे एक इंजन रखा हुआ है यहां पर पूरा सब हथोड़ी थोड़ी सब रखा हुआ है।

पीछे बहुत सा पेड़ है ऊपर आसमान मस्त है नीचे थोड़ा सा रोड ---

ये स्टार अकेडमी का ये ऑफिस है वहां पूरा तीन कुर्सी लगी हुई है.

एक लैपटॉप रखा हुआ है एक फोन रखा हुआ है कप रखा हुआ है यहां पर टिफिन रखा है एक ग्लोब है।

उसका पैर बांधा हुआ है इंजेक्शन को सा नीचे रखा हुआ है एक डॉक्टर इसमें लगाया है.

ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन है उसके बाद पीछे की है.